और आगे शटर भी लगा हुआ--

सूरज ढलता नजर आ रहा है कुछ पेड़ पौधे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं।

मैं देख पा रही हूं यहां एक रुम में--

जो सगीर होटल एवं फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से है।

आदमी भी खड़े नजर आ रहे हैं।

बिजली के खंभे नजर आ रहे--

यहां बहुत सारे बर्तन बेची जा रही है यहां तरह-तरह के बर्तन रखे गए हैं सामने एक --

चिड़िया घर में बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं नीचे बहोत सारी घास है।